जीम है जीम के अंदर डंबल्स रखे हुए है डंबल्स में रेड लाल कलर का नीले कलर का है बहुत सारी मशीनें हैं जीम में हेल्प करती है।

ये बहुत प्यारे प्यारे कमल लगे हुए हैं जो की पौधा होता है बहुत ही प्यारा और होता है।